अ झील के अंदर दो नांव हैं। दोनों नांव में कुछ लोग नांव का आनंद उठा रहे हैं।

बिल्डिंग के आगे उसका गेट है।

ये ई रिक्शा बैटरी के द्वारा चलती है।